यह गुलाब का फूल है इसका पंखुड़ी रे रेड है बल्कि पत्ते हरे है डंटी भूरे कलर का है यह कोई पेन --

फूल लगा हुआ है एक नारियल का पेड़ है और बारा खिड़की है उ ऊपर में और नीचे में तीन खीर --

रोड के बगल में जल कुंभ भी यहाँ घास है और बहोत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है इधर साइड पेड़-पौधे --

बाहर से भी देख रहे है बगल में भी सामान बिक रहा है मूंगफली है बाइक लगा हुआ --

यहाँ किसी फेस्टिवल के लिए मूर्तियाँ बिक रही है यहाँ आकर आप लोग मूर्ति खरीद सक --

सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहां पेड़ भी है तार का वायर है जो पोल से लगा हुआ -सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पेड़ भी है तार का वायर है जो पोल से लगा हुआ --

यहाँ औरंगाबाद के बारे में है बगल में फूल है दो एक टाइगर स्कोप है यहाँ लोग --

यह लकड़ी का बनाया गया बहुत ही अच्छा है जिस के सामान लग रहा है दो बहुत बड़ा खम्भा हैं।

बिल्डिंग है जिस पु जिस कार का पूजा किया हुआ है वो रो रेड वाइट का है और दो रेड कलर का पट्टी --

ओ.एन.आई.टी.ई.ए. टाटा स्काई का एक बोर्ड लगा हुआ है ई.एम.आई. का बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रो --

बाहर में दो टाटा स्काई रखा हुआ है तीन डब्बा रखा हुआ है बगल में बल्डिंग है जिसमे एक नारियल का पेड़ है।

यहाँ बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसमे दुकान वाले सामान है यहाँ बाइक लगा हुआ है हरा कलर का लाइट जल रहा है खिड़की से नजर आ रहा।

पेड़ है यह बिल्डिंग बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है एक गेट बा कितना सुंदर है ।

यहाँ किसी ने एक भैंस को पकड़े हुए है इसीलिए इसे एक क --

यहाँ कलर कलर का बैट है एस.एस. का का टोन का एस.एस. का एस.जी. का --

यहाँ बैट मिलता है इस दूकान में बैट के साथ गेंदा भी फ्री मिलता --

यहाँ एक बिल्डिंग है जो पुराने दिखने में लग रहा है यहाँ लोग अप डाउन कर रहे है बाइक है ।

ऑटो खड़ी है वायर भी है वाओ कितना सुंदर इमेज है।